और महिलाएं उसमें फोटो खिंचाती दिखाई दे रही है।

महिलाएं इसमें फोटो खिंचाती दिखाई दे रही हैं।

चर्च के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।

सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।

महिलाएं उसमें फोटो खिंचाती दिखाई दे रही है।